यहाँ पर बहुत सी पत्थर भी डले हुए जो कि लम्बे-लम्बे दिख रहे है यहाँ पर सी पत्थर भी है जो कलि टाइम में दिख रहे है बादल भी दिख रहा है पेड़ पौधे दिख रहे है यहाँ पर बहुत सी--

यहाँ पे बहुत सा मैदान दिख रहा है एक यहाँ पर जोगी है ये बिल्डिंगे दिख रही वो भी वाइट कलर में दिख रही है बहोत सी बिल्डिंगे दिख रही है यहाँ पर बहोत सा मैदान डला हुआ है यहाँ पर --

पहेना हुआ है। यहाँ पर कुछ पेड़-पौधे भी दिख रहे है। यहाँ पर गाड़िया भी दिख रही है। कुछ यहाँ पर झंडे कि लैस बंदी हुई है। यहाँ पर भू सभी दिख रही है। जैसे की --

यहाँ पे पेड़ - पौधे भी दिख रहे है यहाँ पे बादल भी दिख रहा है यहाँ पे चू बोहोत चौड़ा मैदान भी डला हुआ है कुछ ठीला भी रखी हुई हैं।

यहाँ पे बहुत लम्बा रोड भी डला हुआ है एक बादल भी दिख रहा है कि यहाँ पे जो बादल बहुत सुंदर लग रहा है कि नीला सफ़ेद भी दिख रहा है यहाँ पे कुछ पहाड़ भी दिख रहा है।